दे रही है यहां पर कार का कलर ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है।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

एक ही ग्राउंड दिखाई दे रहा है ग्राउंड बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।